यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं दुकान के ऊपर टाइल्स लगी हुई हैंजो की ग्रे और यलो कलर की हैं सामने की तरफ एक बोर्ड लग रहा हैं; जिसमे कुछ लिखा हुआ हैं।

जिसपे सफेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है पीछे देखने पर स्टेज दिखाई दे रही है जिस पर रंग बिरंगी सजी हुई है ऊपर तार दिखाई दे रहा है पीछे एक लाइट का खम्बा लगा हुआ है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो के हरे रंग की --

नदी दिखाई दे रही है नदी के ऊपर एक पुल दिखाई दे रहा है पुल पर रेलिंग बनी हुई हैं पीछे हरे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं।

उनके लम्बे लम्बे बाल दिखाई दे रहे है उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए है नीचे एक शेर दिखाई दे रहा है ये गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है पीछे से बिजली के तार जा रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है और नीचे कई सारे लोग खड़े हुए हैं।

नीचे कुछ बच्चे हैं जो की लेटे हुए हैं उन्होंने सफेद रंग की कपड़े पहन रखे हैं बराबर में खिड़कियां दिखाई दे रही हैं पीछे पिल्लर्स दिखाई दे रहा हैं जिसपर रंग बिरंगी आकृतियां बनी हुई हैं।

कुर्सियाँ रखी हुई है कुर्सी काले रंग की है एक आदमी है जिसने चेक की शर्ट पेहेन रखी है उसने ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है और भी कुर्सियां दिखाई दे रही है जिस पर एक आदमी सफेद रंग की शर्ट पहने हुए खड़ा --

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक नारंगी रंग की दीवार दिखाई दे रही है हरे रंग की मालाएं लगी हुई है रैक रखी हुई है रैक में बहुत सा सामान रखा हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के आगे शीशे लगे हुए है जिसपे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है दुकान के एक चैनल दिखाई दे रहा है जो कि बंद है सामने कुछ महिलाये बैठी हुई है सिढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

इन किताबों में कुछ छोटी किताब हैं कुछ बड़ी किताब हैं यह दूर दूर तक यहाँ किताब किताब दिखाई दे रही हैं एक आदमी है जिसने सफेद रंग शर्ट की शर्ट पहन रखी है वह खड़ा है।

पूल दिखाई दे रहा है पूल की सड़क दिखाई दे रही है रेलिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है उसके ऊपर सरिया लगी हुई है पीछे देखने पर नाग-नन जल दिखाई दे रहा है जल दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ए --

पैदल जा रहे है मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है बसों में भी लोग बैठे हुए है पीछे दुकान दिखाई दे रही है जिसका लाल रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

एक बच्चा दिखाई दे रहा है पीछे देखने पर दीपक दिखाई दे रहे है जहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई है पीछे एक दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग का है लाइट दिखाई दे रही है लाइट जल रही --